लगता है कि एक इमारत बनी हुई हैं जोकि अ जहाँ पे ऊपर जाने के लिए उसमें रैंप सा बना हुआ है और दो चार सीढ़ियाँ स्टैर्स बनी हुई हैं और वहां पे अ रैंप सा भी बना हुआ है।